सी और C में लूप्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फोर लूप व्हाइल लूप और dowhile लूप
हम इसे कुछ उदाहरणों की मदद से करेंगे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
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1104 जीसीसी और उबंटु पर g कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ
लूप्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं
लूप्स का कई बार निर्देशों के समूह को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है
उद्देश्य के आधार पर उन्हें तीन प्रकार में विभाजित किया गया है160 व्हाइल लूप dowhile लूप और फोर लूप
पहले व्हाइल लूप के साथ शुरू करें
व्हाइल लूप शुरूवात में कंडिशन का परीक्षण करता है
संरचना है व्हाइल ब्रैकेट में स्टेटमेंट ब्लॉक अब dowhile लूप पर चलें
कंडिशन मान्य होने से पहले doव्हाइल लूप कम से कम एक बार निष्पादित होता है
संरचना है डीओ ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट ब्लॉक ब्रैकेट के बाद व्हाइल आप देख सकते हैं कि कंडीशन को अंत में जाँचा है
अब व्हाइल लूप और doव्हाइल लूप पर एक उदाहरण देखें
मैंने एडिटर में कोड पहले से ही टाइप किया है
इसे खोलें
ध्यान दें कि हमारी फ़ाइल का नाम whileसी है
आज हम व्हाइल लूप का उपयोग करके पहले 10 नंबर्स का एडिशन सीखने जा रहे हैं
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
मैन फंक्शन के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल एक्स और य घोषित किये और और 0 के लिए इनिशियलाइज किया
यह हमारा व्हाइल लूप है
व्हाइल लूप की कंडिशन है एक्स इस लेस थान ओर इक्वल टो 10 यहाँ एक्स की वेल्यू य की वेल्यू में जोड़ी गई है
एडिशन के पश्चात प्राप्त वेल्यू य में संचित होती है
फिर हम य की वेल्यू प्रिंट करेंगे
यहाँ एक्स incrementवृद्धि हुआ है
इसका अर्थ है वेरिएबल एक्स एक से बढ़ा है
और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करें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
टाइप करें जीसीसी स्पेस व्हाइल डॉट सी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस व्हाइल एंटर दबाएं
टाइप करें व्हाइल एंटर दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
अब व्हाइल लूप का कार्य देखें
विंडो का आकार बदलें
यहाँ पहले एक्स और य की वेल्यू 0 है
यह हमारी व्हाइल कंडिशन है
यहाँ हम जाँचेंगे कि एक्स 10 से कम या बराबर है जिसका अर्थ है एक्स की वेल्यू 0 से 10 तक होगी
फिर हम जोडेंगे य प्लस एक्स अर्थात 0 प्लस 0 हमें मिलता है 0 हम य की वेल्यू प्रिंट करेंगे यहां हमें 0 मिलता है
फिर एक्स इन्क्रिमेन्ट होता है जिसका अर्थ है अब एक्स की वेल्यू 1 होगी
फिर हम कंडिशन पुनः जाँचेंगे 1 इस लेस थान ओर इक्वल टो 10 यदि कंडिशन ट्रू है तो हम वेल्यूज जोड़ेंगे
य अर्थात 0 प्लस एक्स जो है 1 0 प्लस 1 इस 1 हम वेल्यू 1 प्रिंट करेंगे
फिर से एक्स इन्क्रिमेन्ट होता है
अब एक्स की वेल्यू 2 है
हम फिर से कंडिशन जाँचेंगे
2 इस लेस थान ओर इक्वल टो 10 यदि कंडिशन ट्रू है तो हम वेल्यूज जोड़ेंगे अर्थात 1 प्लस 2 जो 3 देगा
हम वेल्यू 3 प्रिंट करेंगे
इसी तरह यह एक्स इस लेस थान ओर इक्वल टो 10 तक जाएगा
अब हम dowhile लूप का उपयोग करके उसी तरह का प्रोग्राम देखेंगे
यहाँ हमारा प्रोग्राम है
ध्यान दें कि हमारी फ़ाइल का नाम है do whileसी पिछले प्रोग्राम में यह भाग पहले से ही समझाया गया है
तो doव्हाइल लूप की ओर बढ़ें
यहाँ पहले लूप का प्रारूप निष्पादित होगा और फिर कंडिशन चेक होगी
एक्स की वेल्यू य की वेल्यू में जुड़ती है और जुड़ने के बाद प्राप्त वेल्यू य में संचित होती है
तर्क व्हाइल प्रोग्राम के समान ही है
अब प्रोग्राम निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर जाएँ
टाइप करें जीसीसी स्पेस डीओ हाइफेन व्हाइल डॉट सी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस डीओ एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश डीओ एंटर दबाएं
हम देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे व्हाइल प्रोग्राम के समान है
अब doव्हाइल लूप का कार्य देखते हैं
मैं विंडो का आकार बदलता हूँ
यहाँ एक्स और य की वेल्यू 0 है
हम उन वेल्यूज को जोड़ेंगे जिनसे हमें 0 मिलेगा
अब य की वेल्यू 0 है
हम वेल्यू 0 प्रिंट करेंगे
फिर एक्स 1 से इन्क्रिमेंट होता है जिसका अर्थ है अब एक्स की वेल्यू 1 है फिर कंडिशन की जाँच होगी
आप देख सकते हैं कि लूप का प्रारूप पहले निष्पादित होता है
फिर भी यदि कंडिशन फलसे है तो भी हमें वेल्यू 0 मिलेगी
यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या 1 इस लेस थान ओर इक्वल टो 10 है
कंडिशन ट्रू है फिर से हम वेल्यूज जोडेंगे
अब 0 प्लस 1 फिर हम य की वेल्यू 1 प्रिंट करेंगे
फिर से एक्स इन्क्रिमेंट होगा
अब एक्स की वेल्यू 2 है
फिर हम चेक करेंगे 2 इस लेस थान ओर इक्वल टो 10 हम यहाँ वापस जाएंगे
फिर हम वेल्यूज जोडेंगे 1 प्लस 2 जो 3 है
हम य की वेल्यू 3 प्रिंट करेंगे
इसी तरह कंडिशन्स चेक किए जाएंगे जब तक एक्स की वेल्यू 10 से कम या बराबर होगी
और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है
ध्यान दें कि यहां व्हाइल कंडिशन सेमीकॉलन के साथ समाप्त होती है
व्हाइल लूप में कंडिशन सेमीकॉलन के साथ समाप्त नहीं होती
अब देखते हैं कि C में ये प्रोग्राम्स कैसे निष्पादित करें
C में यह हमारा व्हाइल प्रोग्राम है
तर्क और कार्यान्वयन सी प्रोग्राम जैसे ही हैं
यहाँ कुछ परिवर्तन हैं जैसे हेडर फ़ाइल stdioह की जगह आईओस्ट्रीम है
यहाँ हमने नेमस्पेस एसटीडी का उपयोग करके यूजिंग स्टेटमेंट समाविष्ट किया और यहाँ हमने प्रिंटफ फंक्शन की जगह काउट फंक्शन का उपयोग किया
व्हाइल लूप की संरचना सी प्रोग्राम के समान ही है
प्रोग्राम को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें g स्पेस व्हाइल डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस व्हाइल1
एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश व्हाइल1 एंटर दबाएं
आप देख सकते हैं कि आउटपुट सी में हमारे व्हाइल प्रोग्राम के समान ही है
अब C में डीओ व्हाइल प्रोग्राम देखते हैं
टेक्ट एडिटर पर वापस आएँ
यहां भी उसी समान परिवर्तन हैं जैसे हेडर फ़ाइल यूजिंग स्टेटमेंट और काउट फंक्शन
अन्य सब समान हैं
प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने टर्मिनल पर वापस आएँ
टाइप करें g स्पेस डीओ हाइफेन व्हाइल डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस डीओ1
एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश डीओ1 एंटर दबाएं
हम देख सकते हैं कि आउटपुट सी में doव्हाइल प्रोग्राम के समान ही है
अब हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधान देखेंगे
अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएँ
मानिए कि यहाँ मैं एक्स की वेल्यू इन्क्रिमेंट नहीं करूँगा
सेव पर क्लिक करें
देखें क्या होता है
टर्मिनल पर वापस आएँ
मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूँ
प्रोग्राम को निष्पादित करें
यूपी ऐरो की दो बार दबाएं
फिर से यूपी ऐरो की दबाएं
आउटपुट प्रदर्शित होता है
हम शून्य देख सकते हैं क्योंकि लूप में टर्मिनेटिंग कंडिशन नहीं है
इसे इन्फिनाइट लूप के रूप में जाना जाता है
इन्फिनाइट लूप सिस्टम अनुत्तरदायी बनने का कारण हो सकता है
यह प्रोग्राम को सभी संसाधको के समय को नष्ट करने का कारण बनाता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है
अपने प्रोग्राम पर वापस जाएँ एरर फिक्स करें
टाइप करें x और सेमीकॉलन
सेव पर क्लिक करें
फिर से निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
अप ऐरो की दबाएं
हाँ यह कार्य कर रहा है
यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
हम अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँगे
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा व्हाइल लूप
उदाहरण while dowhile लूप
उदाहरण do स्टेटमेंट ब्लॉक और अंत में व्हाइल कंडीशन नियत कार्य के रूप में फोर लूप्स का उपयोग करके निम्न को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
0 टो 9 फोर लूप का सिंटेक्स है फोर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल कंडीशनऔर वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और यहाँ लूप का ढाँचा होगा
नीचे दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं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
धन्यवाद